एक पुल दिखाई दे रहा है जिसमें पानी भरा हुआ है। पानी हरा काला कलर का दिखाई दे रहा है। ऊपर पेड़ लगा हुआ है फ़तर लगे हुए हैं बैठने की चिप लगी हुई है। पीछे साइड चालू साइड पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

उस पे कुछ व्यक्ति बैठे कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं और मंदिर के सामने एक घंटा नजर आ रहा है।

यहां पर एक दरवाजा दिखाई दे रहा है खिड़कियां दिखाई दे रही है चार ऊपर बहुत सुंदर बजी खिड़कियां दिखाई दे रही है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और ऊपर कुछ गुंबद टाइप के दिखाई दे रहे हैं और सामने रास्ता दिखाई दे रहा है।

पत्तिया नजर आ रही हैं बहुत सारी रंग है उसका हरा और पीला और लाल।

सब दिखाई दे रहा है जो कि पूरा सफेद कलर का है सामने ईट की दिवाले दिखाई दे रही ।

भगवान जी की मूर्ति दिखाई दे रही है जिनमें बहुत सी मूर्तियां रखी हुई हैं | नीचे साइड में मूर्तियां रखी हुई हैं और नीले कलर से सजा ह --

हुआ है पीछे और सफेद कलर से। सामने एक घंटा लगा सा हुआ है और नीचे टाइल्स लगी हुईं है जो कि ब्लैक और वाइट कलर की दिखाई दे रहीं हैं।